बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे लोग जमीन पर बैठा हुआ है।

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

कोने में बहुत सारे कुर्सियां भी रखा हुआ है।

टेबल पर बहोत सारे टिशू पेपर और नमक का डब्बा और मेन्यू रखा हुआ है।

में स्टील रेलिंग भी लगा हुआ है।

रेलिंग पर बैनर्स भी लगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

नीचे में प्लाईवुड पड़ा हुआ है।

आस पास पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

पास बहुत सारे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

उपर मे बहुत सारे ट्यूबलाइट और पंखा लगा हुआ है।

और स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है।

जमीन पर फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है।

आस पास बहुत सारे ट्यूब लाइट्स भी ल लगा हुआ है।

सामने में बहुत सारी कुर्सियां और टेबल भी रखा हुआ है।

और दीवार पर बहुत सारे गीजर भी लगा हुआ है।

और कोने में एक बाइक भी खड़ा है।

सामने में बहुत सारा बंबू भी लगा हुआ है।

अलमारी पर चाभी भी लगा हुआ है।

दीवार पर एक आईना भी लगा हुआ है।